जूते वगैरा रखे हुए है बोटल वगैरा है यहाँ पे दो तीन लोग जो है और यहाँ खड़े हुए है और ये ग्राउंड काफी बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ से--

--और एक टेबल जैसे बनी हुई है जिस पे एक अंकल लेटे हुए है और एक डॉक्टर है जो इनके पैर का इलाज कर रहे है मशीन यहाँ से दिखाई दे रही है गेट वगैरा जो है वो दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक गुफा दिखाई दे रही है पत्थरों की और जिसके अंदर एक गेट जैसा बना हुआ है।